तिरंगे के कलर के आ बाउंड्री पे खंभे नजर आ रहे है व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में खं आ दीवार बनी है खंभा है।